ओर कुछ समान रखा हुआ है उस लड़के के पीछे दीवार पर हल्के नीले रंग का कलर पोथा है उस लड़के के पीछे गुजूर व्यक्ति खड़ा है।

बड़ीसी माता रानी ये की मूर्ति ई बनी हुई है उस मूर्ति के अगल-बगल बहुत सारे लोग--

बड़ासा शादी का इस्टेज बना हुआ है उस इस्टेज के ऊपर एक बड़ीसी कुर्सी बिछी है जिस पर कुछ लोग बैठे है।

एक व्यक्ति एक पूल के बगल मे खड़ा हुआ हैं उस व्यक्ति--

और लाइटे लगी है गेट के पास दो व्यक्ति कुर्सीपर बैठे हुए है।

कुर्सी पर एक लड़का बैटा हुआ है उस लड़के के हाथ मे मोबाइल है।

ओर चार-पाँच लाइट के बलब जलते हुए दिख रहे है तीनों व्यक्तियोने अपने चेहेरे पर मास्क पहना हुआ है।